यहां पे गमले में फूल पत्ते लगाए गए हैं यहां पे काफी सारे लाइट से डेकोरेशन किए गए हैं।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

लोहे की बोंड्री मारी हुई है।

पीछे की ओर एक रोड नजर आ रहे हैं जो ईट का टाइल्स भी लगा हुआ है।

यहां पे तीन पाइप रखे हुए हैं यहां पे एक चेयर नजर आ रही है जिसकी कलर येलो है।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

पीछे की ओर पेन भी रखी हुई है पीछे की ओर काफी सारे सामान रखे हुए हैं।

नीचे की ओर टाइल्स लगी हुई है ऊपर की ओर सीढ़ी में टाइल्स लगी हुए हैं।

ऊपर का बैकग्राउंड वाइट है ऊपर की ओर काफी सारे पंखे लगे हुए हैं जिसकी कलर ब्लैक है।

यह एक चर्च का दृश्य बना हुआ है जिसकी कलर रेड एवं ग्रे है।

ऊपर की ओर एक चर्च का बना हुआ है।

यहां पे तीन चार व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं उनके कपड़े के अनेक है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य बना हुआ है यहां पे गेंद के फूल से डेकोरेशन किए गए हैं।

पीछे की ओर मिट्टी भी नजर आ रही है बाहर की ओर एक स्कूटी नजर आ रही है।

किसी कर काफी सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं उनके कपड़े कलर अनेक है।

यहां पे एक लकड़ी की मदद से टेबल बनी हुई है।

यह एक स्कूल का दृश्य बना हुआ है जहां पर लकड़ी की मदद से टेबल बनी हुई है।

यहां पे एक चेयर नजर आ रही है जिसकी कलर ग्रे हैं।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

दिवाल में खिड़की नजर आ रही है जो लोहे की मदद से बनी हुई है दिवाल की कलर गोल्डन है।

यह एक फील्ड का दृश्य बना हुआ है जहां पे काफी सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं उनके कपड़े का कलर अनेक है।

दीवार की कलर व्हाइट है पीछे की ओर दो भगवान का फोटो भी लगाया गया है जिसमें फूल से माला पहनाया गया है।

यह एक सैलून दुकान का दृश्य बना हुआ है जहां पे दो व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

यह एक किला का दृश्य बना हुआ है जहां पर एक व्यक्ति अंदर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बाहर की ओर डब्बे भी रखे हुए है जिसकी कलर रेड है।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

यह एक गार्डन का दृश्य बना हुआ है जहा पे छोटी छोटी घास भी नजर आ रही है।

यहां पे काफी सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं इनके कपड़े के अनेक हैं।

इसके उपर एक कपड़ा भी रखा हुआ है इसके ऊपर एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर एक लोहे का पाइप भी नजर आ रहा है पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक है।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

यहां पे पानी बोतल भी नजर आ रहे हैं यहां पे कार्टून में कोई सामान रखे हुए हैं।

यहां पे एक शीशा का टेबल नजर आ रही है जिसके ऊपर सामान रखे हुए हैं।

बाहर के ओर बाइक और स्कूटी भी लगी हुई है जिसकी कलर ब्लैक एवं रेड है।

काफी सारे पैकेज वाला समान रखे हुए हैं अनेक है।